और कुछ आदमी भी दिख रहे हैं खंभों पर लाइट लग रही है एक डी_सी_एम भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इनमें कुछ बकरिया व्हाइट और कुछ भूरी भी नजर दिखाई दे रही है।

यह एक मकान है जिसमें अंदर कुछ कुर्सियां और एक व्यक्ति दिख रहा है।

मैदान में नीचे हरी घास है और ग्राउंड के चारों तरफ सफेद पट्टी खिंची हुई है।

पीछे एक नीले कलर का पन्ना भी पड़ा हुआ दिख रहा है।

उसके पीछे कुछ पेड़ हैं तथा बड़ी इमारत भी दिख रही है।

एक कार खड़ी है खंभा लगा है लाइन बंधी हुई है।

यहां मेला भर रहा है जिसमें बड़े बड़े चार झूले दिखाई दे रहे हैं।

कुछ हरे भरे पेड़ पौधे हैं लोहे की ग्रील लगी है।

और दीवार पर कुछ फैन भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दो ब्लैक कलर की कार हैं कई सारे खंभे हैं जिन पर लाइन बंध रही हैं।

और उस पर फोर जी लिखा हुआ है और अंदर एक एल_सी_डी रखी हुई है।

यह मच्छी की शॉप है जिसमें बहुत सी मच्छी रखी हुई है कुछ मच्छी पीले कलर की क्रेट तथा नीले कलर की क्रेट में रखी है।

लगी है दीवार पर लाइट भी लगी हुई है और दीवार पर कुछ सामान भी रखा हुआ है।